और यह एक कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी रखे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर आईसक्रीम की दुकान दिखाई दे रही है और एक पानी की बोटल भी दिख रही है।

इस इमेज में यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही हैं सामने दीपक भी जलता ना जा रहा है।

इस इमेज मे यहाँ पर छोटी छोटी बहोत सारी मछली दिखाई दे रही है और तराजू भी नजर आ रहा है।

इस इमेज मे यहां पर एक ड्रेसिंग टेबल दिखाई दे रहा है और दो पानी की बॉटल रखी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक कार की डिग्गी खुली दिखाई दे रही है और एक लड़का रिपेयरिंग करता नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है जहां पर पौधे नजर आ रहे हैं।

मास में यहां पर एक पानी का तालाब दिखाई दे रहा है एक पेड़ भी यहां पर नजर आ रहा है।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

ऐसा पहाड़ इस इमेज में यहां पर एक पुल दिखाई दे रहा है और नीचे नदी बहती नजर आ रही है।

इस इमेज मे यहां पर पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग काम कर रहे है।

इस इमेज में यहां पर एक बैंक दिखाई दे रहा है और कुछ लोग कतारों में खड़े नजर आ रहा हैं।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

ऐसे यहां पर एक याट दिखाई दे रहा हैं आसपास कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर चट्टान दिखाई दे रही है यहां पर एक लड़का लड़की नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक स्कूल दिखाई दे रही है और बैंचों पर कुछ विद्यार्थी पढ़ते नजर आ रहें है।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

इस इमेज मे यहां पर तालाब दिखाई दे रहा है बाहर कुछ लेडिसे पूजा करती नज़र आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है और एक घोड़े की मूर्ति भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर जंगल दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक बंगला दिखाई दे रहा है और एक गेट भी नजर आ रहा है।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

ऐसे में आज मे यहां पर एक मार्केट दिखाई दे रहा है और काफी सारे फूल नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहाँ पर एक ताजिया दिखाई दे रहा हैं और दो व्यक्ती खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और गेट के पास कुछ लोग खड़े नजर रहे हैं।